चारों तरफ एक रेस्टोरेंट है जिसमें चारों तरफ से मिकी माउस और सांप और ऊक सामने एक कुकु बना हुआ है।

लोहे की एक रेलिंग लगी हुई है बगल से एक ए.सी. का कंप्रेसर रखा हुआ है साइड से एक पक्की सड़क है और --

सामने एक बड़ी-सी दीवाल है और एक ऑरेंज कलर की और ग्रीन कलर की पुती हुई है उसमे कुछ दो मूर्तियां रखी हुई है।